उस जिम के स सामने लोहे की टीन बिछ रही है।

जिसने एक एयर ब्लूटूथ पहन रखी है।

उसने एक ब्लैक कलर की शल्ट पहन रखी है।

यह एक सरकारी दफ़्तर है।

एक अगरबत्ती भी लगी हुई है।

यह सहारनपुर का इलाका है और इसपे एक लोहे का बोर्ड लग रहा है।

यह एक पार्टी का फोटो है।

और इसके बाहर बोहोत सारी मोटरसाइकल और बोहोत सारी कारें खड़ी हैं।

पीछे एक पेंटिंग भी रखी हुई है।

एक ऊपर सैलून का बोर्ड लग रहा है जिस--

और इसके पास बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं।

यह एक नीले कलर का बोर्ड है।

जिसके ऊपर वोडाफोन का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें एक टंकी लगी हुई है।

एक लाल कलर की कार है।